और एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

और एक घड़ी भी लगा हुआ है बहुत सारे साइकिल जो इस दृश्य को अच्छा।

इस दृश्य में एक पार्क है जो बहुत ही पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

जो इस दृश्य को बहुत ही खूबसूरत बना रहे हैं।

दो लड़की ओवन में कुछ बना रही है।

नीले नीले आसमान में बहुत ही खूबसूरत लग रहे है।

और फॉल सीलिंग भी है और ऊपर में फॉल सीलिंग में लाइट लगे हुए है।

और सैमसंग भी लिखा हुआ है।

और प्लेट ब्लैक कलर का है और चटनी में धनिया पत्ती भी शायद है।

ग्रीन कलर का घास लगा हुआ है जो इस दृश्य को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है।

और दीवार में पोस्टर भी।

और नमक का दो बोतल है एक वाटर बोतल--

इस दृश्य में एक मैरिज हॉल दिखाई दिया गया है जिसमें कुछ चंद लड़के हैं और।

ये बहोत खूबसूरत ही लग रही है और टाइल्स लगा हुआ है ग्रीन कलर का।

और बहुत सारे चेयरस् भी है बहुत सारे लोग भी हैं जो इस --

जो इस दृश्य को बहुत ही खूबसूरत बनाता है।